जो की रेक्टएंगुलर शेप में हैं तथा जिसका कलर चॉकलेटी कलर का है तथा व्हाइट कलर की टाइल्स से मिक्स में लगाई गई है।

इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है वो एक ग्राउंड लग रहा है तथा इसमें एक दीवार से बाउंड्री की गई हु है।

तथा सामने की तरफ उस ग्राउंड मे दीवार पर जो लिखा हुआ है उस पर आदित्य लिखा है और नीचे एम_एससी बी_एससी इलेवेन्थ एण्ड ट्वेल्फ्थ लिखा हुआ है तथा एक बोर्ड और लगाया जिस पर प्रजापति लिखा हुआ है।

जो बंदा ए_टी_म के बाहर जा रहा हैं वो हॉफ टी शर्ट पहने हुआ हैं।

जैन ढाबा लिखा हुआ है और जो हिंदी में रेड कलर से लिखा गया है।

असमान बिल्कुल साफ और नीला दिखाई दे रहा है पत्थरों के सामने झाड़ फाड़ के पौधे भी लगे हुए हैं जोकि ग्रीन कलर के दिख रहे हैं।

एक मैन्यू रखा हुआ है तथा साइड में कुछ कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

कुछ खा रहा है तथा एक टीचर भी उसके साथ कुछ खा रहा है और पीछे की ओर ग्राउंड में ग्रीन ग्रास भी है।

ऊपर की साइड सीलिंग में दो लाइट्स लगी हैं जो की वाइट कलर की रोशनी दे रही हैं।

और जो एक बुजुर्ग दिख रहा है वो व्हाइट कपड़ो में है तथा ब्लैक कलर की बेल्ट बांधे हुए है।

इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है वो एक टीन शेड पड़ा हुआ है जोकि एक हॉल टाइप का लग रहा है।

त मंदिर के चारों तरफ बाउंड्री की गई है जो की सफेद ईटों से है।

की ब्लू येलो और ब्लैक कलर के देखाई दे रहे हैं साथ में ही कुछ--

ऊपर की तरफ व्हाइट लाइट लगी हुई हैं चारों तरफ किताबें ही किताबें दिखाई दे रही है।

साइड में इंडिया लिखा हुआ है और इंडिया के अपोजिट साइड में --

जोकि एक टी शर्ट और एक पैंट पहने हुआ है शर्ट का कलर बैंगनी है तथा पैंट का कलर --

एक झूला बहुत ऊंचा लगाया गया है जो कि रॉकेट की तरह लग रहा है तथा नीचे कुछ गाड़ियों में आले झूले भी लगे हैं।

लग रहे है छत पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जोकि साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं।

ता सभी नालियों में पोल्स लगे हुए हैं जो कि बांस के लग रहे है तथा काफी सूखे हुए लग रहे हैं।

की ब्लैक कलर की नहीं व्हाइट कलर की दिख रही है सीलिंग में फैन का उसे किया गया है।